एक लेबर उस छत की ढलाई करते हुए नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है।

पे हरे कलर की मैट भी बिछी हुई नजर आ रही है।

उस सोफे का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है।

जिसके बाहर बैनर लगाकर बिहार वेडिंग स्टोर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जहां पे बहोत सारे टेबल और चेयर रखे हुए नजर आ रहे हैं।

जैसे ग्लास टिश्यू पेपर मेन्यू कार्ड पानी की बॉटल्स वग --

और ग्राऊंड में बहुत से पेड पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे--

इस दृश्य मे एक मिठाई के शॉप दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में एक स्टेज नजर आ रही है।

जोकि आपस में होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक हॉल दिखाई दे रहा है।

और अंदर दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और टेबल और चेयर भी नजर आ रही है।

इस गार्डन एरिया में बहुत सारे हरे भरे घास लगाए हुए--

यहां पे कुछ थोड़ी थोड़ी बहती हुई पानी नजर आ रही है।

और एक चेयर भी नजर आ रही है।